यह एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

और लोगों के बैठने के लिए सोफा भी दिखाई दे रहे हैं।

स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।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

यहां पर एक लैंप दिखाई दे रहा है।

और लाइट भी दिखाई दे रही है और बहोत सारे कर्टन भी दिखाई दे रहे हैं।

और गाड़ी भी दिख रही है और यहां पर बहोत सारे टाइल्स भी दिखाई दे रहे हैं।